यह बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से डांस कर रहा है और यह बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनत किये होंगे डांस सीखने में यह सब बच्चा का डांस देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और इनका पैर का स्टेप और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है यह बहुत ही अच्छे तरीके से डांस --

जिम करने से हमारा शरीर में बॉडी बनता है और हमारा शरीर फिट रहता है। जिम हमे हमेशा सुबह को करना चाहिए ताकि हमारा शरीर --

बड़े बड़े मशीने रहते हैं जिससे जिमर लोग जिम करते हैं बहुत ही भारी-भारी लोहे भी होते हैं।

यह कपड़ा का दुकान है। यहाँ पे बहुत से लोग कपड़े खरीद ने के लिए जाते हैं। यहाँ हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे स्वेटर भी मिलते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग कपड़े खरीद ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हर एक ब्रांड के कपड़े मिलते हैं।

हिन्दू धर्म के लोग गो माता भी बुलाते हैं। गाय बहुत ही ज्यादा शांत जानवर होते हैं।